बैंक है। ये बैंक के अंदर के ऑफिस की जगह है। यहाँ सबके कैबिन बांटे है। यहाँ चेयर बिछी है।